इस फोटो में ये घर हैं घर के आगे एक बड़ा सा टरक हैं टरक के पास एक गाड़ी हैं।

और यहां पर एक कुर्सी पड़ी है जिस पर रेड कलर का एक कपड़ा रखा हुआ है।

और वहां दो गेट लगे हुए हैं ऊपर ए_सी लगी हुई है जो सफेद कलर की है।

और अलग अलग ड्रेसेस पहनी हुई है कुछ के सफेद है टी शर्ट है और अलग अलग पैंटे हैं इधर के साइड मे एक और भी दरवाजा है।